हमारे छत्तीसगढ़ में परसिध माना जाता है मैनपाट का गौतम बुद्ध का मंदिर और सबसे बड़ा गौतम बुद्ध का मंदिर हैं ।

यहाँ बच्चे लोग को --

बहोत ही सुंदर बना हुआ है स्कूल --

गाड़ी में तेल डलवाने के लिए लोग जाते है और यहाँ --

नाँव के सहारे और ऊपर जो चिड़िया दिख रहा है बहोत ही सुन्दर फोटो लेने वाले ने एक तरफा फोटो लिया हैं ।

मोटर - वोटर साईकल लगा हुआ है यहाँ प्रशासनिक भवन नगर परिसद लिखाया हुआ हैं ।

यहाँ कुछ काम होता होगा यहाँ सरकारी काम --